सामने में एक रोड देखने को मिल रहीं हैं।

और उस मैदान में बहोत सारे पीले कलर की बस देखने को मिल रही है वहां पे दो तीन लोग भी देखने को मिल रही है।

वहाँ पर बहोत सारे हरे भरे पेड़-पौधे भी देखने को मिल रहे है और उसके पीछे बहोत सारे ढेर सारे ये बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी देखने को मिल रहा है।

सामने में एक बहुत बड़ा पंडाल देखने को मिल रही हैं।

और वहाँ पे ढेर सारे लोग भी देखने को मिल रहे और दोनों साइड से हरे-भरे पेड़-पौधे देखने को मिल रहे और वहाँ पे पानी की बोतल भी देखने को मिल रहे --

सामने में एक बहोत सारा मेला जैसा भीड़ लगा है वहां पर छठ पूजा हो रहा है।

और एक और लड़का भी नजर आ रहा--

और उसके पीछे एक पर्दा है उसकी कलर काली नजर आ रही है।

और रोड पे एक दो आदमी भी देखने को मिल रही है और वहां पे बहोत सारे गाड़ी भी देखने को मिल रही है।

सामने एक कॉलेज देखने को मिल रही है और इसके नीचे कुछ फरसे भी देखने को मिल रही है।

और उसमे चार उपाय भी देखने को मिल रही है।

सामने एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है और उसके उसके बाजू में एक गाड़ी लगी है उजले कलर की उसके ऊपर रेडियो लगा हुआ है।